सामने लाल और पीले रंग की दीवाल दिखाई दे रहीं हैं।

तीन आदमी सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं भूरे रंग का टेबल दिखाई दे रहा है काले रंग की कुर्सी मे एक--

के दीवाल का कलर ग्रे और क्रीम है ब्लैक कलर का बॉर्डर हुआ दिखाई दे रहा--

दिवाल का कलर लाल है लाल कलर की स्कुटी नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के टेबल दिखाई दे रहे हैं।

अंदर एक भूरे रंग का टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ सामान पड़े हुए नजर आ रहे--

सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें नीले रंग के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा विश्वास लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बांस लगे हैं जमीन में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

बोर्ड लगा हुआ है बाहर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है जिसमें ग्रील पे अमे--

जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर के बोर्ड में डीलक्स लिखा हुआ नजर आ रहा हैं बाजू में एक व्हाइट कलर का--

काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें बिट्स डांस लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक ऑफिस नजर आ रही है व्हाइट कलर के बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहे है जिसके ऊपर बुक रखी नजर आ रही है कबर्ड बने हुए हैं।

आरेंज कलर का कंबल दिखाई दे रहा है।

पत्थर पर बैठने का टेबल नजर आ रहा है गमले दिखाई दे रहे है कांच के दरवाजे नज़र आ रहे हैं जिसपे एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

छोटा सा का दीवाल नजर आ रहा है।

सामने एक भूरे रंग का टेबल है जिसपे वाटर स्प्रे पर दिखाई दे रहा है।

सामने एक व्हाइट कलर का छोटा सा घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे चारे रखे हुए नजर आ रहे हैं।

वायर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

घल बने हुए हैं भूरे रंग की खिड़की दिखाई दे रही है।

भूरे रंग का दरवाजा नजर आ रहा है।